टैटो स्टोर के साइड में एक ए_सी लगा हुआ है यहां पर वो एक स्केलेटन बना हुआ है जिसकी आंखों में लाल लाइट चल रही है।

ये ऑफिस व् का व्यू हैजहां पर शायद लंच चल रहा हैऔर शा--

ये एक बहुत पुराना फॉन्ट हैजिसके सामने सी_डी टाइप का एरिया बना पड़ा है यहां पर एक --

येलो शर्ट ओर ब्लू जींस पहनना एक लड़का ऊपर चढ़ रहा है इसे देखने के लिए।

लीट करके लास्ट वाला मूव दिखा रहे हैंजहां पर कुछ लोग उन की फोटो खेचि है ।

गुलाबी कलर के फूलों से और रेड और गुलाबी कलर के मिश्रण से इसको सजाया गया है।

एक ग्रोसरी स्टोर है जहां पर--

गारमेंट स्टोर हैजहां पर जींस रखी है अलग-अलग कलर की रेड। लो --

ये खाली रोड है जिसके पल्ली साइड ब्रिज है।

ये कंपनी का व्यू हैजो शायद कंपनी के अपार्टमेंट की साइड से लिया गया है।

ये ग्रोसरी स्टोर है जहां पर हर प्रकार का सामान मिलता है दही वगैरह साइड में एक बैनर लगा है अचार पांच बच--

और नीचे पेन ऑयल का एक बैनर लगा हुआ है सामने एक मेज है जिसके साइड मे कुर्सी है शायद यहां पर एक भी है।

ये एक ऑफिस है जिस की कंपनी का नाम हैगुरु कृपया फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और साइड में एक--

ब्लू और गोल्डन कलर का यहां पर थी।

इंसान का ऑफिस है जिसके कर्मचारियों को बहुत सारे फोटोस मिले हैं पर ये--

तीनों इंडिया के ब्रांड है और कलर भी अलग-अलग है ब्लू रेड और वाइट और पीछे लाइट के डिब्बे हैं नीचे क्रोमटन के बॉक्स रखी हुई है।

यह एक मंदिर का व्यू है जहां पर कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं पूजा के बाद सबने लाल कलर की--

ये एक पार्टी का व्यू है जिसमें डी_जे लगे हुए हैं।

गुलाबी कलर में कि शल्ट में लड़का है वो ओके --

ये ड्राइंग एरिया हैजिसमें दो सोफे हैंब्राउन कलर --

कंस्ट्रक्शन एरिया हैजिसमें मिक्सर खड़ा हुआ है जिसमें सीमेंट मिक्स होता है और वो--

ये कॉलेज का ग्राउंड हैजिस कॉलेज का नाम एस_एम --

ब्राउन कलर का कॉलेज है यहां पर नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं उनके पेरेंट्स खड़े हैं और बाइक खड़ी है।

ये ग्रोसरी स्टोर है जिसमें फ्रीजर लगा हुआ है आइसक्रीम का और ग्रोसरी स्टोर में वो--

पैरट है यहां पर ग्रीन कलर के मेल और फीमेल और एक कबूतर भी है दो तीन कबूतर हैं जो पिंजरे में बंद है।

पार्किंग के बाहर बहुत सारी साइकिल खड़ी हैऔर दो-चार लड़के खड़े है।

ये छोटा सा लकड़ी के ब्लॉक से बनाई हुई बिल्डिंगों का एरिया हैजिसमें--

सैलून शॉप है जिसका नाम ताज सैलून है।

और इसके बाहर एक वाइट कलर में लड़का खड़ा हुआ हैवाइट कलर की शर्ट पहने --

अलमेरा हैजो कांच की बनी हुई है जिसके साइड में आदमी खड़ा हुआ है।

आंखें बना देते हैंऔर कुछ सैंपल्स लंगे हुए हैं।

छह आठ पैनल लगे हुए हैं।

ये एक मोबाइल शॉप है जिसका नाम नयार मोबाइल है।

ये ग्रोसरी स्टोर के अंदर का व्यू हैजो अंदर से बाहर देख--

ये एक पार्टी का खाने का एरिया हैजिसमें बहुत सारी बाउल रखी हुई हैऔर खाने का सामान के लिए अलग से स्टोर बना हुआ है।

ये वो एरिया है जिसमें कार धुलती हैं और ठीक होती हैं अब तक तीन कार खड़ी हैं टीन शेड यहां पर हैं और ब्लैक कलर के नीचे--